इस इमेज मे एक कुर्सी दिखाई दे रही है जो की स्काइ और व्हाइट कलर की है।

इस इमेज मे एक एक्टीवा दिखाई दे रहा है एकदम व्हाईट अंड ब्लू कलर खड़ा दिखाई दे रहा है।

नाव भी दिखाई दे रहे है और ऊपर हरा भरा ऊपर नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है। रेती भी--

इस इमेज मे बहुत सारे बुक्स दिखाई दे रहा है। कलेंडर दिखाई दे रहे है। पेन दिखाई दे रहा है ग्लू दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे डब्बे दिखाई दे रहे है जिसके अंदर सामान भरा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ खिलौने दिखाई दे रहे है और कुछ--